यहां कुछ खेल चल रहा है।

ये एक मछली बजार है और यहां बहोत सारे प्रकार के मछली रखे हुए हैं।

ये सात सात के सात लोग चर्च के फादर लग रहे हैं।

इसे इस बिल्डिंग के बाहर में एक बलेरो कर पार्कड है।

जहां लिखा हुआ है ग्रेस ब्यूटी पार्लर ।

और यहां सुंदर सुंदर टूल्स लगे हुए हैं।

और यहां पर एक एक्समस ट्री भी है जिन पे बिजली जल रहा है।

जिसके वॉल पर लाइट जल रहे है।

धोने के लिए और एक सफेद डस्टर कार को एक इंसान धो रहे हैं और--